बिल्डिंग के सामने एक बहुत ही बड़ा सा पेड़ है।

और बिल्डिंग मरून और लाल कलर का है।

अगल बगल में बहुत सी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है।

और बहोत से छोटे छोटे पेड़ है।

यह कोई मैदान का चित्र है।

बगल में बिल्डिंग भी है और सामने में छोटे छोटे पोल जैसे लगे हुए हैं।

यह एक मूर्ति की चित्र है।

पीछे वाइट कलर की और नीचे वाइट कलर की टाइल्स लगी हुई है।

यह चित्र एक नर्सरी का है।

यह चित्र में बहुत सारे पुरुष है।

सब टीचर खड़े हैं बगल में लिखा हुआ है अह डी_ए_वी यूनाइटेड ।

अगल बगल में ब्राउन और वाइट कलर के दीवार है।

और अगल बगल में बहुत सारी स्कूटी और बाइक लगी हुई है।

यह चित्र एक हुंडई शोरूम की है।

बगल में एक बहुत ही बड़ा सा पेड़ है नीचे एक लकड़ी की डाली है।

और कुछ कुर्सियां भी है और हरे रंग से इसको सजाया है ।

ऊपर में बहोत सारे पंखे लगे हुए हैं।

यहां पर ग्रीन कलर का कुछ लगा हुआ ।

यहां पर बहुत सारी ईंटे है जमीन में कीचड़ लगी हुई है।

बगल में एक सफेद बिल्डिंग है।